बड़ा सा हाल है हाल में बड़ा सा बेंच लगाया हुआ है।

उस पर एक बड़ा सा फराठा रखा हुआ है फराठा उसको सेका गया है आगे पीछे से।

यहां पर बड़ा सा नदी का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर नदी का दृश्य दिख रहा है नदी में दो नाव है एक नाव व्हाइट कलर का है एक नाव लकड़ी का बनाया हुआ है।

पानी में बहोत सारे पक्षी हैं जो वाइट कलर के हैं कुछ पक्षियां उड़ रही है कुछ पानी में है।

रेलिंग बनाया हुआ है रेलिंग ब्लैक कलर का है छोटे छोटे रैक बनाया हुआ है।

गेट लगाया हुआ है गेट वह कलर वाला है और खे पाइप --

नीचे मिट्टी है मिट्टी पे छोटे छोटे कंकड़ फेके हुए हैं।

ऊपर में टेंट लगाया हुआ है टेंट पिंक और रेड कलर का है बगल में ब्लू और पिंक कलर का है।

बगल में एक वाइट कलर का पोस्टर है घर का कलर पीला कलर से है।

यहां पर बड़ा सा बिल्डिंग का दृश्य दिख रहा है बगल में सीढ़ी है लगाया हुआ ऊपर में एक खिड़की लगाया हुआ है बगल में एक ठेला रखा हुआ है।

बगल में खिड़की है खिड़की ब्लू कलर का है ऊपर में भी एक खिड़की है।

बोतल रखा हुआ है और कुछ पाइप टांगा हुआ है।

यहां पर क्लीनिक का दृश्य दिख रहा है।

यहां पर कंप्यूटर सेंटर का दुकान का दृश्य दिख रहा है।

कुछ फूल्स लगाए हुए हैं नीचे और बगल में गेट भी है गेट में ग्रिल लगाया हुआ है।

गोंद रंग बिरंगे का है कुछ ब्लू है ग्रीन है रेड कलर का है।

लेजर रखा हुआ है डब्बा में सेलो टेप रखा हुआ है कटा रखा हुआ है बगल में स्टेपलर रखा है।

यहां पर बड़ा सा खेत का दृश्य दिख रहा हैं खेत में कुछ बोया हुआ हैं अगल बगल पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

यहां पर क्लीनिक का दृश्य दिख रहा है।

बड़ा सा काउंटर बनाया हुआ है काउंटर पे एक बुक रखा हुआ है पेपर रखा हुआ है।

सामने घरे बनाई हुई है कुछ और क्यू_आर कोड रखा हुआ है फोनपे का लाइट जल रहा है सामने से।

सामने पहाड़ है पहाड़ पे भी छोटे छोटे घास लगाए हुए हैं और छोटा छोटा पेड़ पौधा भी लगाया हुआ है।

विक्स वाला चॉकलेट रखा हुआ है और ग्लूकोन डी रखा हुआ है वाइट वाला ग्रीन वाला।

सामने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं पोस्टर व्हाइट कलर का है उस पर फूल वाला जयमाला सेट दिख रहा है और दिल वाला बनाया हुआ है।